एक गेट बना हुआ है जिसका कलर रेड कलर का है इस पार्क में बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है जेंट्स दिखाई दे रहे है जो--

मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और बीच में एक सडक गई है वाइट कलर की--

और यहां पे जो बेड है उनपे जो कपड़ा बिछाया गया है जिसे हम कहते हैं पिलो वगैरा जो रखा गया है।

सामने मुझे सन ढलता हुआ दिखाई दे रहा है आसमान का व्यू पूरा क्लीन है और ये शाम के समय की फोटो लग रही है इवनिंग टाइम की।

क्योंकि पीछे सारी दुकानें बनी है जैसे ओम इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है।

यह जो पिक्चर है ये गार्डन की पिक्चर है यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।